एक एक बड़ा-सा लोहे --

साथ में यह अपने हाथ पे खड़े हाथ पे खड़े रहकर भाड़ को इ नियंत्रित किये हुए है यह एक मार्शल आर्ट्स का क्लास एक मार्शल आर्ट्स का क्लास है।

ताव की एक दुकान जहाँ पे बहुत कि बहुत सारी किताबों का संग्रह है। साथ में साथ में अम्म एक सीढ़ी भी है और--